यह तस्वीर एक हॉस्पिटल की है यहां हम देख सकते हैं बहुत सारी हॉस्पिटल की सिस्टर्स हैं।

इन पौधों के पत्तियां थोड़ी बड़ी है एक तरफ हमें पौधों पर सूरज की रोशनी पड़ती दिख रही है।